बहोत सारी मट्टी पड़ी हुई है।

पेटी पर लेटर बॉक्स लिखा हुआ है।

जिस पर काँच लगे हुए --

एक कोटक बैंक के एक नीले रंग का कोई बंधन बैंक है।

इस चित्र में हम देख पा रहे है कि बोहोत सारी हरियाली दिख रही है।

पर हरे और कुछ और रंग के पत्ते दिख रहे --

और अपनी फो तस्वीर खिंचवा रहे हैं।